मे लाइट लगाया हुआ है जो सफेद कलर का है घर में दरवाजा भी दिखाई दे रहा हैं।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

कान में पंखा लगाया हुआ है जो सफेद कलर का है।

फ़ील्ड के बाहर बहुत सारा घर भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारा खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

घर के बगल में बहुत सारा पेड़ पौधा है।

बैंक के बाहर गाड़ी लगा हुआ हैं।

बैंक के बगल में बहुत सारा घर है।

घर का कलर वाईट रंग से पेंट किया गया है।

दीवाल पर पीछे पोस्टर लगाया हुआ है।

काउंटर में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

घर में बहुत सारा बोर्ड लगाया हुआ है।

कॉलेज के ऊपर एक लाइट लगाया हुआ है।

डैम के बाहर एक आदमिन है।

एक गेंदा दिखाई दे रहा है गेंदा का कलर वाइट रंग का और ब्लैक रंग का है।

घर के बाहर एक दरवाजा है।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

घर में बाल्टी में फूल लगाया हुआ है।

घर में टेबल कुर्सी लगाया हुआ है।

घर का कलर वाइट रंग का है।